यहाँ एक म्यूजियम है यहाँ पर पुराने सामान रखे जाते हैं और खनाई जो होता है उससे मिलते हैं जो सामान वहाँ पर रखे जाते है।

जू का तस्वीर है और इस जू में यह जो दिखाया जा रहा है जानवर ज़ेबरा है।

और यहां लोग आकर अपने अलग-अलग गांव जहाँ जाने का रहता है वहां पे ऑटो ड्राईवर से बोलते हैं और ले जाते हैं यहाँ के ऑटो ड्राईवर भी बहुत ही अच्छे से बात करते है और यहाँ कम दामो में पहुंचाया जाता हैजहाँ जाने का रेहता है वहां कम दामो में पहुंचाया जाता है।

इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है सुरक्षित रहता है और यहाँ पर बड़े बुजुर्गों के साथ जिम जा रहे है उनके देखभाल करने के लिए पार्क अति --